और कुछ फूल को भी लगाए हुए है कुछ बड़े गमले में फूल को अच्छे से सजाया गया है और वह तरह-तरह के है एक व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर जाते नज़र आ रहा है किनारे में सीढ़ी-- .

और नीचे में बहुत सारे पुस्तक को भी रखे गए है और सीढ़ी भी दिखाई दे रही-- .

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जोकी इस कमरे के अंदर में तीन पुतले है और उस पुतले में शर्ट को रखे हुए है तथा शेरवानी को उसके बगल में कुछ स्टूल सब भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और दिवारे भी दिखाई दे रही है ।

''यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसके नीचे में भीम इ यु.पी.ई. लिखा हुआ है और एक इंसान का चित्र भी दिखाई दे रहे है नीचे में कुछ फ़ोन पे व्हाट्सप गूगल पे पेटीएम लिखा हुआ है और किनारे में बहोत सारे सामान भी दिखाई दे रहे और नज़र--''

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जोकि केक की दुकान है उसके ऊपर में दी केक शॉप गिफ्ट गैलरी लिखा हुआ है उसमें एक महिला नीचे खड़ी हुई है ऐसा लग रहा है की--

कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे है और एक व्यक्ति के नारे में तराजू भी दिख रही है और कुछ सामान भी--

गिफ्ट भी लगी हुई है कुछ लोग नीचे में है।

और कुछ किनारें में बड़े से पेड़ और बैठने के लिए एक छोटा सा स्टूल दिख रहा है पीछे में--

जिसके ऊपर में सब खड़े हुए है उसके नीचे में भी बहुत इंसान लोग खड़े हुए नज़र आ रहे है और दुकान में बहुत सारी समान भी दिखाई दे रही और ऊपर में और कुछ दुकाने नज़र आ रही है और लोग खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे है लोग इधर-उधर चलते नज़र आ रहे है।

बहोत अच्छे से सज़ाए है उसको किनारे में कुछ गोल-गोल का चिन्ह भी लगा हुआ दिखाई दे रहा--